इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि बहोत ही बडा एक बगीचा है उसकी तस्वीर है ये अलग बगल पूरे घास पेड़ पौधे उगे --

पूरा पर्दा बैलून से सजाया गया है। अगल-बगल भी पूरे पोस्टर लगे हुए हैं। गैस सिलेंडर भी रखा गया है।

और इसपे पुरी काई जम चुकी है ग्रीन ग्रीन घांसे भी उग चुकी हैं पूरा पेंट वेंट इसका खराब हो गया है। यह इटें का बना हुआ कच्चा है अभी और पूरा यह इधर से पूरे गुफा टाइप का चार-पांच रास्ते हैं।

इस तस्वीर में देखा जा सकता है ये पार्लर की दुकान है यहाँ पे सलून लेडीज अंदर सोफे वोफे लगे हुए हैं पूरी टाइल्स वाइल्स लगी हुई है। स्पा के लिए पूरा --

कुछ और कुछ बुक किताब कापी पेन सब भी तरह के यहाँ सामान मिलते हैं। अलग - बगल भी दुकानें हैं।

अगल बगल ये घने-घने पेड़ पौधे हैं और ये पूरा घर बना हुआ है।

इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि ये मार्केट की तस्वीर है। मेला लगा हुआ है यहां पर और यहां पर ढ़ेर सारी दुकानें हैं जहां पर चुड़ी --

जो होती हैं वो खड़ी होती हैं इसमें खड़ी करने की जगह होती --